इस तस्वीर में सामने एक बहुत बड़ी प्लेन नजर आ रही है जिसका रंग सफ़ेद और लाल है इसके आस- पास बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आ रही है।

भीड़ में एक मछली बाजार नजर आ रहा है जहाँ बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है।

तस्वीर में सामने एक डमी नजर आ रहा है जो पीले रंग का फ्रॉक पहन कर है।

इस तस्वीर में सामने एक रास्ता नजर आ रहा है जिसके किनारों मे बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रही है सामने एक चर्च भी है जिसका रंग वाइट है ।

तस्वीर में सामने कुछ पहाड़ नजर आ रही है जिसके बीच से सीढ़ी बनी है इसके आसपास बहुत सारे--

दुकान मे कई तरह के फल है जैसे-तरबूज नींबू मुसम्बी अनार केला सेब।